और यहा पर लोग आके फोटो भी खिचाते है।

यह भी फोटो है सरस्वती माता का है जो अभी पूरी तरह से बन कर तयार नहीं हुआ है इस मे रंग पेन्ट का भी कला अभी बाकी है जो--

यह भी एक शिव भगवान का मंदिर है।

जो की मूर्ति पर भोलेनाथ का--

यहाँ पर कोई काम चल रहा है जहाँ पर की कीरान के द्वारा मट्टी खुदाई हो रहा है और इसके अंदर पोल घुसा रहे हैं।